यह एक अ यहां पे दो-तीन कंप्यूटर दिख रहे है रेड कलर की चेयर दिख रही एक बॉयज बैठा हुआ है पानी का थर्मस भी रखा हुआ है पर्दा भी दिख रहा है।

यहाँ पे बाइक दिख रही हैं कुछ खड़ी हुई एंड एक जेन्ट्स दिख रहे हैं जिन्होंने येल्लो कलर की शर्ट पहन रखी है बैठे हुए हैं वो।

एंड एक ट्रक भी खड़ा हुआ है बहुत सारी बाइक भी खड़ी हुई हैं एंड साइकिल भी दिख रहीं हैं कार भी खड़ी हुई हैं राइट साइड पे बिल्डिंग भी दिख रहीं हैं।

हम्म यह एक पोल पेट्रोल पंप है यहां पे बस भी खड़ी हुई है कार भी खड़ी हुई है कमांडर भी खड़ी हुई हैं।

एंड बाइक्स भी दिख रहीं हैं आसमान भी दिख रहा है पेड़ भी दिख रहे हैं हल्के-हल्के।

उम्म यहाँ एक बहुत ही सुन्दर सी जगह है।